और लेफ्ट हैंड साइड की जो तस्वीर हैं वो बहुत ही सुंदर है और --

यह एक दृश्य दिख रहा है हमें जिसमें काफी सारा क्राउड है और क्राउड के ऊपर हम देख सकते हैं।

बच्चे यहां पर जाकर के खेल सकते हैं।

यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य है।

एक ईमारत भी खड़ी है जिसके राइट सैंड साइड में--

एग्जिट गेट नंबर टू लिखा है और इसके सामने जो है बहोत ही बड़ा वृक्ष है।

यह एक दृश्य है जो कि हमें दिख रहा है ये एक लिफ्ट पर गाड़ी जो है वो टंगी हुई है।

जिसमें कि हम देख सकते हैं कई प्रकार के जो है व्यायाम करने के लिए--

इसके स्टेज के ऊपर आप देख सकते है बहोत ही बड़ा बैनर लगाया है।